होटल गेटवे कर्नाटका लिखके है।

अंदर में एक सजाया हुआ रुम दिखाई दे रहा है जो कि स्टेज लग रहा है।

फेंसिंग का अंदर में ग्रास दिखाई दे रहा है।

ऊपर में आसमान दिखाई दे रहा है।

और सामने में बहुत सारा आदमी दिखाई दे रहा।

चेयर दिखाई दे रहा है।

एक प्लास्टिक चेयर भी दिखाई दे रहा है इसमें।

और वॉल में एक फोटो दिखाई दे रही--

और पेड़ पेड़ का सामने लोहा से बना हुआ फेंसिंग दिखाई दे रहा है और कारपेट दिखाई दे रहा है।

स्पीकर दिखाई दे रहा और कारपेट दिखाई दे रहा--

इसमें एक घर दिखाई दे रहा है जो चर्च जैसा है।

लेफ्ट साइड में हेलमेट दिखाई दे रहा है।

ऊपर में एम_एस सारिस लिख के है।